यह ना मार्किट का है और आसपास राशन दुकान भी है अ कुछ महिलाएं सब्जी लेके बैठी है एक महिला मास्क पहन के रेड कलर का थैला लिए अ शायद सब्जी लेके जा रही है।

बस बस पीछे का ही दिख रहा पब्लिक लोग का जो खड़े है भीड़-भाड़ में--